किसी ग्रामीण उ क्षेत्र में यहाँ हमें स्टेट बैंक की शाखा दिख रही है जोकि राजकीय बैंक है और यहाँ पर हमें कुछ --

यह पुलंकित हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश बदाऊं में स्थित है।

और यहाँ ये सारे रिक्शे अभी एकदम नये नक्कुर रखे हुए है। यहाँ पर ये रक रिक्शे सेल किये जा रहे है और यहाँ पर हमें कुछ लोग दिख रहे हैं।

यहाँ हमे कोई भी मनुष्य ना अधिकारी ना वहाँ काम करने वाला या ना वहाँ कि सेवा ग्रहण करने वाला कोई मनुष्य दिख रहा है।

और यहाँ पर हमे डॉक्टर या कोई भी मरीज या अन्य व्यक्ति नहीं दिख रहा है बड़ा ही शांति बनी हुई है और रोशनी आ रही है। इससे पता चलता है की सुबह का समय हो रहा है।

ई रिक्शा और ई स्कुटी यहां पर लिखा हुआ है और यहाँ कुछ लोग रिक्शा खरीदने आ रहे हैं चहल पहल बनी हुई है ।